एक बुक काउंटर है जहां पर एक आदमी काउंटर के पास खड़ा हुआ है और उसके पास भी एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि कुछ देख रहा है|

यह एक कर्मी पीले खड़ा हुआ है यहां तीन ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं लड़के के हाथ में फोन है मार्क्स लगाए हुए हैं वह ब्लू कलर की ड्रेस पहने हुए--

यहां बहुत सारे फ्लावर लाइट दी गई है और नीचे जमीन पर कालीन बिछी हुई है और साइड में चेयर रखी हुई दूल्हे की यहां एक डेकोरेशन के लिए सामान भी रखा हुआ है|

और पीछे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है साइड में कुछ झंडे लगे हुए हैं पानी में कुछ फूल वगैरा अगर बत्ती डाली हुई होगी और यहां पर और तो औरतें गली होगी--

यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है जहॉ दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर बीच में खड़े हुए है।

यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए है जो की अपने शार्प से सामान बना रहे है यहाँ पर टीचर्स भी खड़े हुए एक जिनकी साड़ी का कलर ब्लू एंड येलो है।

वहाँ पर क्रिसमस का डेक फंक्शन चल रहा है जहाँ पर काफी सारी डेकोरेशन किया हुई है।